दो पुल बने हुए है।

साथ ही में जो सजावट सजाया है वो बहुत ही--

यहाँ पे सात जन्मो के वादे भी निभाए जाते है।

एक घोडा ए के ऊपर बैठता है दूसरा--

ये ग्राउंड बहोत ही बड़े है।

जो एक किनारे से दुसरे कीनारे में--

बीच में लाल है और ऊपर मे--

यहाँ पे गाड़ी में चढ़ा रहे है और उसके बदले में पैसा मिलते है।

एक नाव सफेद है और दूसरा पीला भी--

तीन आदमी है एक आदमी नाव में--

सारी कुर्सी पर बैठे हुए है।

दोनों तरफ तीनो पिलर स्तम्भ पर--